यहाँ पर एक लम्बी सड़क जाते हुए दिखाई दे रही है और सामने एक बहोत बड़ा ग्राउंड जैसा बना है। वहां पे एक बड़ा सा पेड़ है जिसमे बहोत सारे हरे हरे पत् --

बगल बीच में बहोत बड़ा घर दिख रहा है उसमे बहोत सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं ।

और यहाँ पे अम कुछ निचे में दरी बिछा हुआ है। रेड कलर का है। पिंक कलर का है। व्हाइट कलर का है। सामने एक बाइक खड़ी यु --

और सामने मे एक घर के ऊपर बड़ा सा व्हाइट कलर का टंकी लगा हुआ है| बहोत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

ऊपर पर एक झरना दिखाई दे रहा है जिसमे से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है। अगल बगल बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे है।